ये अ-हम्म-अ बोहोत ही अच्छा क्लिनिक है। जो की अ बोहोत लोगो का सहायता करती है। यहाँ बोहोत ही अच्छे काम बोहोत नेक काम यहाँ के डॉक्टर करते है। यहाँ दवायीं बोहोत अच्छी मिलते हैं।

हिंदुस्तान एक्स-रे सेंटर बहुत ही अच्छा हैं। यह हमारे शहर का जाना मना एक्स-रे शेंटर हैं। जो की बहोत ही अच्छे तरीखे से शांत स्वभाव से एक्स-रे करते हैं। यहा के लोग यहा आके म-मशीन भी बहुत अच्छा हैं।

इस जगह के बारे में बहुत लोग जानते हैं सुरेन्द्र आई_टी सिन्हा प्राइ_आई_टी जो भी मतलब है यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर जाने माने लोग हैंयहाँ--

अ-मतलब बहुत ही अच्छे यहाँ पर रोड है बहुत अच्छे बने हुए रोड है यहाँ पर--

यहां पर बहोत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के बहुत आगे गए हैं बहोत इस कॉलेज के बारे में बहोत ही लोगों को पता है बहोत ही नामी है हमारे शहर का कॉलेज है जो की बहोत लोग जानते हैं।

यहाँ पर एक अ- कॉलेज के साथ-साथ गुमने का भी जगह यहाँ पर बनाया गया है और हरयाली हमारे तो रहते ही है तो बहुत ही अ अच्छा लगता है।

यहाँ ये वर्क शॉप में लोग काम करते हैं और अअ बहुत अच्छे से काम करते हैं जो की इन लोग को काम करना चाहिए और यहाँ पर अ-अ-अ लोग बहुत ही अअ लोग मन लगा कर काम करते हैं।

जो बहोत ही कम पैसे मे बहोत ही अच्छा दवाइयाँ यहाँ पर देते हैंऔर अ ये रोड भी बहोत अच्छे है यहा पर लोग भी बहुत ही बहोत ही अच्छे लोग हैं। जो की बहोत ही अच्छी तरीके से अअ बिहैव करते हैं अच्छे--

अ अपना अल्लाह को याद करते हैंऔर बहुत ही अपना मन लगा के सब लोग यहाँ पर अपना ये अ-अ नमाज करते हैं और अच्छी बाते होती हैं।

बहुत सारे अअअअ लोग एसे है इसे है जो बहुत ही अ-अच्छे होते है और बहुत अ-- अच्छे तरीके से बात--

यहाँ पर काम बहुत अच्छे से होते है यहा पे लोगों को अअ बहुत अच्छे से सामान मिल पाता है जो की अअ लोगों को अच्छा लगता ह--

यह हमारा शहर का बहोत ही अच्छा मॉल है जो की लोग यहाँ पर बहोत अच्छा सामान है बहोत अच्छा कम दाम में सामान मिलता है।

यहाँ पर बहुत सारे मसीन लगे हुए है बिजली सप्लाइ होता है यहाँ पर--

मोतीमहल बहोत अच्छा है यहा पर बहोत अच्छा रेस्टोरेंट है ये जहाँ अ म बहोत अच्छा खाना यहाँ पर मिलता हैं अ--

ये बहुत अच्छा म-मॉल हैं और ये आजम ग्रुप का मॉल हैं वेजो की रामजिल टावर है।

यहाँ पे लोग आते जाते रहते है घुमते फिरते रहते हैं यहाँ पर पेड़ - पौंधा बहुत नए - नए पेड़ - पौंधे लगाये गए हैं बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू आता हैं और अअ बहुत ही अ दृश्य होता हैं।

कम दाम मे अच्छे कार मिल जाते हैऔर पर और बहुत नजदीकी मे यह अच्छे कारें यहाँ पर उपलब्ध है और जो की लोग ले सकते है और इन्जॉय कर सकते है इसमें।

यह घुमने का एक बहुत ही अच्छा पार्यटन स्थल हैं जहा लोग घूमते है और--